एक आदमी पौधा में पानी डाल रहा है।

और बहुत सारी खंभे दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक चित्र है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रोड है।

अलमारी के ऊपर बोतल किताब कॉपी भी दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में एक पिकअप बहन दिखाई दे रहा है जो आगे की ओर जा रहा है।

इसके दीवाल जो है ग्रीन कलर के चादर से ढके हुए हैं।

इसके तालाब के बीचों बीच दो बत्तख दिखाई दे रहे हैं जोकि तैर रहे हैं।

और रोड के दाएं तरफ बहुत सारी लाइटिंग की सुविधा भी है।

इस चित्र में हमें एक बहोत बड़ा नदी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हम यह देख रहे हैं की लगभग चार पांच आदमी योग करते दिखाई दे रहे हैं।

और ग्राउंड के बाहर लगभग पांच छै बाइक दिखाई दे रहे हैं।

और चित्र के पीछे की ओर लग रहा है ग्लास से इस चित्र को ढका गया है।

डूबता हुआ सूरज भी दिखाई दे रहा है।

के नीचे मार्बल टाइल्स की धरती है इसमें।

और सोफे पर चार पांच तकिये भी दिखाई दे रहे हैं।

और उसके बोर्ड रेड कलर के हैं।

बाथरूम साफ करने के लिए क्लीनर भी है और एक फ्रीजर भी है।